सामने एक घर है जो क्रीम कलर का है और एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक गोल चक्र दिख रहा है जो लकड़ी का है जिसके ऊपर मक्की की--

रोटी लिखा हुआ है ऊपर चम्मच छपी हुई है और साइड में एक--

सामने एक घर दिख रहा है जो सफेद कलर का है जिसकी छत--

हम्म काली खिड़कियां दिख रही हैं और पीछे एक बड़ा पोस्टर लगा है सफेद पीछे वाली पर--

ग्रीन कलर से हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला लिखा हुआ है और साइड में कुछ आदमी खड़े--

सामने एक लंबा ब्रिज दिख रहा है जो--

सफेद कलर का है और ऊपर मोटी--

ये लाइट वो लाइन देख रही है और एक झूला देख--

सामने एक गे छोटा काले कलर का गेट लगा है जिसके दोनों साइड दीवाल में--

ढेर है टीनों के ऊपर एक बड़ा काला बोर्ड लगा है जिसमें भारतीय स्टेट --

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके पीछे एक--

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो ग्रे कत्थई कल--

है और बीच में एक खंबा है जिसमें ऊपर लाइट लगी हुई है और बहुत सारे --

और ऊपर छत ग्रे कलर की है सरपे लाइट लगी हुई है।

कुछ आदमी ब्लैक एंड वाइट और रंगीन दिख रहे हैं ऊपर एक आसमान है पेड़ है।

और लिखा हुआ है और खंभे बने हैं बहोत सीकड़ो--

पत्थर के खंभे हैं और ऊपर पेड़ जैसी डिजाइन बनी है।

पीली लाइट लगी हुई है और साइड में खिड़कियां है। ऊपर पंखे लगे हुई है। बहोत सी महिला--

दोनों सफेद पर्दे और नीले लगे हुए हैं बहुत सारे खंभे--

सफेद बोर्ड लगा है जिसके चारों ओर कथाई कलर है जिसमें--

फुल का और दूर बहोत सारी बिल्डिंगे पहाड़ दिख रहे है ऊपर नीला आसमां--

पूरा कमरा ब्लैक एंड वाइट कलर का दिख रहा है सामने--

सब्जी है और सुखी सब्जी है दो कटोरी में स्टील की चम्मच डली हुई है।

खुर्सिया दिख रही है और बालकनी के किनारे--

बहोत से गमले रखे हुए हैं जिनमें हरे पेढ़े हैं और दूर पहाड़--

घां से बर्फ डली हुई है ऊपर निपीला आसमान--

तस्वीरें रखी हुई है और अंदर एक आदमी दिख रहा--

ने ऊंचा खंभा दिख रहा है जो नीचे ग्रे कलर का है और बीच में ऊपर--

जल रही है और एक साइड में दीवाल में भी --

बेकरी चाय लिखा हुआ है और बीच में एक खंबा है जिसमें ऊपर सफेद--

सामने एक स्टेज है जिसपे बहोत सारी महिला--

पर्दे लगे हुए हैं ऊपर नीली झालर है और वहां--

बहुत सारी कुर्सियां डली है जिस पर लड़के लड़कियां बैठे।